और जो बीच में बड़ा मूर्ति हैं वो हाथ खोल के खड़े हुए हैं और जो हैं उस के ऊपर सींगिल स्पिसिफिक रखा हुआ हैं उस के पीछे जो वॉल हैं जो रेड कलर --

यहाँ एक मूर्ति टाइप में हैं या मूर्ति ही हैं इसके ऊपर पाँच सात मूर्ति और जुड़े हुए हैं बगल में दो मूर्ति हैं।

घर का ढलाईया हो रहा है शायद ईटा जो है सीमेंट वाला ईटा है। और इसके नीचे सेटिंग लगा हुआ है। सेटिंग में बहुत सारे बांस लगे हुए हैं। ऊपर ईटा लगा हुआ है। नीचे गिट्टी टिटटी फेका हुआ है अंदर लेबर मजदूर काम कर रहे हैं।